बहुत सारा पेंर पौधा --

बहोत सारी लड़कियां फोटो खिंचवा रही है कुछ कुछ बनकर और यह मेला का है।

और आदमी सब भी चल रहा है बिजली का तार भी है पेड़--

इधर मशीन सब भी रखा हुआ है।

बहुत सारे दिया जला रहा--

यह एक कॉपी किताब का दुकान है बगल में सीढ़ी भी लगा हुआ है और एक आदमी कॉपी --

रोड पर ठेला-उला लगा हुआ है टेंपू-ऊंपू लगा हुआ है बगल में पेट्रोल पंप है आदमी --

ये सब जा रहा है आ रहा है बाइक भी जा रहा है।